और इसपे लिखा है हमारे यहां हर प्रकार के फैंसी की इ सेलिंग की जात् --

इस इज इमेज में देखा गया कि यह एक चर्च है और इस--

यहां पे एक बहोत बड़े वानर में गणेश जी की पोस्टर लगी हुई है।

गोल्डन कलर की कलर से इसको ओ किया गया है कभर किया गया--

क्रिकेट सामान रखी है जोकि मैच की और बैडमिंटन की और कुछ बॉल रखी हुई है।

जहां पे उम्म उम्म चार सोफे चार पांच चार अ कुर्सी और एक सोफा रखा हुआ हैं।

कुछ मे कुछ रखे हुए है।

ये एक कई सारे कर्टेन्स लगे हुए हैं।

इस पिक्चर में दिखाया गया है कि यह एक बहुत बड़ी अह पार्क है यहां--

और यहां बहोत सारे पटरे का यूज किया गया और या--

इस पिक्चर में दिखाया गया कि यह एक लैब है जहां--

कुछ ओ कटोरी रखी हुई है।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

दो लैम्प लगी हुई है और बहुत बड़े फिल्ड है यहां पे यहां पर ग्रीन ग्रॉसरी है और एक इंसान खड़ा--